और यहां पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ खाने पीने की--

यहां पर सामने एक दुकान है।

है सामने कुछ समान रखा हुआ है और यहां पर कुछ तस्वीरें लगाई गई--

सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

सामने कुछ सजावट की गई है और यहां पर--

यहां पर सामने एक कमरा है और यहां एक टी_वी लगाया गया है।

यहां पर सामने एक जिम हैं और यहां पर कुछ सजावट की गई है यहां--

और कुछ लोग यहां पर नहा रहे हैं आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं।